देख सकते हो काफी खाली स्थान बना हुआ है खाली स्थान के अलावा इसमें देख सकते हो की काफी इसमें अच्छा है काफी अच्छा बेहतरीन आपको बनाया गया है।

और एक और भी सामने जो है लेडीज बैठी हुई है वो भी आप देख सकतें हैं की एक चेयर पर लेडीज बैठी हुई है।

ये कोई एक ट्रेनर या कोई जिम की फोटो है सामने आप फोटो में आदमी को दौड़ते हुए आप फोटो में देख सकते हो ये कोई जिम ट्रेनर की फ़ो --

खिड़कियों के अलावा नीचे आप जमीन देख सकते हो और ऊपर आप देख सकते हो काफी कुछ है और आप जो है ये जमीन पे भी देख सकते हो टाइल्स लगा हुआ हैं कितना साफ सुथरा टाइल है।

और नीचे तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा होटल दिया है नीचे ऊपर ऊपर लाइटिंग भी कितनी अच्छी है।

देखिये कोई शोरुम है और शोरुम मे जैसे काफी कपड़े लगे होते हैं ऐसे देखिये काफी कपड़े लगे हुए हैं और इसमे तो आप चेकिंग कर सकते हो कि कितने कपड़े हैं और कपड़े मे जो लगे हैं।--

देख सकते हो कि वो जो यहा पे गली देख सकते हो जिसमे एक लिखा हुआ है आर डबल सी भागलपुर ही लिखा हुआ एक बेनर् है।